अभी इन पेजों को तैयार किया जा रहा है।

ये तो गोल्ड प्लस फेस मास्क है।

ये वाले अच्छी ऐड कर रहे हैं ये प्रोडक्ट भी अच्छा बना रहे हैं।

इस रोड के बीचो बीच खंबे लगे हैं लाईटों के बोहोत ही सारे।

ये सामने स्कूल बच्चों की बस खड़ी है।

क्योंकि ऊपर से ही पानी कम आ रहा है।

और यहां का देख रहे हैं डिजाइन थाली का कितनी स्पेशल थाली है।

फोर व्हीलर आराम से अपने घर के आगे भाई पार्क हो जाएगी इसलिए यहां पे लिया।

ये अच्छी और फूल डाल रखे हैं। फूलों वाली माला डाल रखी है।

कार्ड लग जाता है। हर हर ए.टी.एम. का एक्सिस होता है भाई।

क्या बात है भाई? यहाँ अपने मंदिर में कितने अच्छे तरीके से --

और इसको देखो ये छठ पूजा का मंदिर बनाके ऊपर ईख के पत्ते लगा रखे हैं। गन्ना लगा रखे हैं।

जिसकी शैक नीली कलर की है। शैक में और एक सफ़े --

पता नहीं कितना समय लगेगा इसको ठीक होने में --

भाई यहाँ पर ये इसमें पत्थरों के बीच भरा हुआ पानी कितना खुबसूरत लग रहा है।

यार ये वाले होटल का गेट पे कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है।

और मंदिर की छत पर देख त्रिशूल भी लगा है।